जिसने सफेद कलर की शर्ट पहनी हुई है और --

ये एक बहो खूबसूरत कपड़ों की दुकान है।

जिसमें बहुत खूबसूरत मुख्तलिफ कलर के कपड़े पड़े हैं इसमें आइ थिंक सेल लगी --

और इसमें बहुत से लड़के भी मौजूद है।

इस खेल में बहुत से पौधे भी लगे हुए है इनका रंग आ

देखिए तो बहुत से दरक्त भी मौजूद है जिनका रंग हरा है।

भी मौजूद है उसके बाहर गाड़ियां भी और मोटरसाइकिल भी खड़े हैं गाड़ियों का --

ये बहु रवि है।

ये एक बहुत खूबसूरत जगह है जिस--

ये सूरज दिख रहा है।

बहुत खूबसूरत लाइटिंग भी लगी हुई है और इसमें--

पौधों का रंग हरा और ।